यह चित्र में हमें दिखाई दे रही है एक इमारत---

आसमान में काफी सारे बादल नजर आ रहे हैं।

यहां कुछ लोग नजर आ रहे हैं एक दो गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

आसमान में काफी सारे बादल नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें कुछ कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमें लाल और पीले रंग का कुर्ते दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर हम देख सकते हैं कि लाइट और कैमरा लगा हुआ है।

यहां लोग डांस की प्रैक्टिस रहे हैं।

जिसने ऑरेंज कुर्ता और क्रीम पजामा पहना हुआ है।

जिसका नाम हाजीपुर जंक्शन है।

और टमाटर को काटकर फूल जैसा आकार दिया गया है।

झरने के आसपास पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर पीला गेंदा सफेद गेंदा गुलाब --

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर कुछ कपड़े धुले हुए टंगे हैं।

एक आदमी जिसने चेक्स शर्ट पहनी हुई है।

इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है एक बुक की दुकान जिसका नाम श्री राज सवारी बुक है।

एक दरवाजा नज़र आ रहा है जिसमें ताला डला हुआ है।

इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है।

जहां पर स्टेशनरी का सामान मिलता है।

एक एक्टिवा दिख रही है जिस पर एक लड़की बैठी हुई है। अपनी मां के साथ --

ऊपर हमें सफेद और लाल रंग का एक घर दिख रहा है।

और कुछ मजदूर नजर आ रहे हैं जो कि घर बना रहे हैं।

इस चित्र में हमें नजर आ रहा है एक मॉल जोकि तैयार हो रहा है।

सोस की बोतल और शहद की बोतल भी दिखाई दे रही है।

जिसका नाम बंधन बैंक है।

इस तस्वीर में हमें तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक औरत खड़ी हुई है जिसनें सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

वो लड़कियों को सुई धागे से कुछ बनाना सिखा रही है।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

इस तस्वीर में हमें नजर आ रही है एक दुकान--